नदी के किनारे पहाड़ है पहाड़ो पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए है सुन्दर दृश्य है।

नदी है नदी के किनारे मछलिया है टोकरिया है|

रास्ता है रास्ते के किनारे पर गाड़िया खड़ी हुई है बैंक है कुर्सी रखी--